और ठीक आगे बेरीकटिंग लगी हुई है।

एक व्हाइट पाइप नजर आ रहा है जिसमें पक्षी बैठे हैं।

कुछ ईटे भी नजर आ रहे हैं बैठने के लिए सीटे भी नजर आ रहे हैं।

और पंखे कुछ ऊपर है।

इसमें बहुत सारे पानी है ऊपर आसमान नजर आ रहे है आगे कुछ पौधे नजर आ रहे है।

बहुत सारे चेयर्स नजर आ रहे हैं।

कांच के दरवाजा नजर आ रहे हैं ब्लू बैलून नजर आ रहे हैं एक पौधा नजर आ रहा है गमले में।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

बोर्ड में लिखा हुआ है अमूल चौधरी आइस पार्लर ।

दुकान के बगल में क्यू_आर स्कैन नजर आ रहा है एक घड़ी भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे बाइक नजर आ रहे हैं।

पेड़ नजर आ रहे हैं बिल्डिंग के दरवाजे खिड़की नजर आ रहे--

और कुछ लड़कियां बैठी है कुछ चेयर में बैठे हैं कुछ खा रहे हैं कुछ लोग।

नीचे तीन आदमी नजर आ रहे हैं।

एक पीला तिरपाल नजर आ रहे हैं आगे कुछ झाड़ियां है।

ब्लू झंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में लिखा है सचिन होटल और एक बोर्ड में लिखा है बिरसा मार्ट --

घर नजर आ रहा है जो चर्च जैसा दिख रहा है।

ढलाई वाला प्लाई नजर आ रहा है।

गेट का आगे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

अंदर लोग नजर आ रहे हैं और एक पोस्टर नज़र आ रहा है जिसमे लिखा है महाराणा --